और पीछे इसके साइकल खड़ी है।

और ये पुराना सामान पड़ा कुछ--

नीचे एक खेत है जो मट्टी--

ये शिफ्ट पिप से एक गेट है पेड़ है बहुत सारे।

ये सामने की तरफ एक गाड़ी है इसमें--

चल में ये सामने की तरफ ईंट सी हैं बहुत सारी।

और घेवर रखा है काले रसगुल्ले रखे हैं।

और बहुत सारे व्यक्ति हैं।

एक स्टूल से रखा है वो।

सामने की तरफ भी बहोत सारी स्कूटीस खड़ी हैं।

लोग नीचे अं नीचे इसके कबाड़ा सा है बहोत सारा बिछ रहा है।

और घर सा है ये एक लीला सा--

और इसमें की बहुत सारी खिड़की सी लगी हैं ये।

नीचे इसके पत्ते से बिछ रही आस पास।

मट्टी का ग्राउंड सा है एक--

ये एक मछली का वो है।

ये एक मशीन सी है जिसमें की ये टाइमर सा चल रहा है एक मे --

इसमें काम सा चल रहा है ये--

इसके सामने रोड है एक।

और सामने रेलिंग सी लगी है लोहे की।

और यह खाली रखे फैंसी।

सामने की तरफ भी खाने का सामान रखा बहुत सारा।

और ऊपर लाइट व्हाइट लग रही बहुत सारी और गमले लग रहे--

इसमें एक काउंटर सा रखा है ये--

र ये नीचे तरह अं बाट रखे हैं बहोत सारे ईट पे।

एक वो रखा है कटोरी छोटी सी कुर्सी रखी है बहुत सारी।

खिड़की रखी लगी है बहोत सारी सामने की तरफ दीवार पे लाल दिवार रंग हो रहा जिसपे डिजाइन बना है।

और ये सरिये लगे हैं।

और नीचे इ ईंट पड़ी हैं छोटी छोटी।

पीछे इसके घर सा है कि और पेड़ पौधे हैं छोटे--

और इसमें बहोत सजावट सी की गई है।

और ये घर सा है बहोत अ बड़ा।

ये एक खेत है जिसमें कि फसल उगाई जा रही है।

और ये एक ईक खड़ा है।

और नीचे मैट्स पड़ा है।

और ऊपर रंग हो रहा है इसपे।

एक गेट सा है एक।

और नीचे टाइल बिछरी हैं।

और एक ये टीचर हैं इनका जो इनको कुछ सिखा रहे हैं इनके हाथ में कुछ बॉल सी हैं।

और आस पास बहोत सारी कुर्सी रखी हैं बैठने के लिए--

और नीचे इसके पथ अह फरस बिछ रहा--